पारक के बाहर कुछ बच्चे भी नजर आ रहे हैं।

यहां पर हमें एक अमूल दूध की दुकान दिखाई दे रही है।

अमूल की आइसक्रीम दिखाई दे रही है।

बाहर गाड़ियां भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर एक हाथी की फोटो दिखाई दे रही है।

तालाब के अंदर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है।

हमें यहां पर एक चर्च का दृश्य दिखाई दे रहा है।

क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर हरियाली की तरह घास नजर दिखाई दे रही है।

सामान की दुकान के अंदर कुछ सामान दिखाई दे रहे हैं।

डांसर ने एक हाथ में जूता पहना हुआ नजर आ रहा है।

कमरे में ए_सी भी हमें दिखाई दे रही है।

पीले कलर की बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है जाली भी नजर आ रही है।

यहां पर एक ब्लैक कलर की गाड़ी दिखाई दे रही है।

सामने की तरफ बंफर लगा हुआ नजर आ रहा है।